इस इमेज में दो व्यक्ति खड़े हुए दिखाई दे रहे है जिन्होंने ग्रीन कलर की जॉकेट पहनी हुई हैं।

साथ ही कुछ ब्लैक कलर के पत्थर भी दिखाई दे रहे है।

कुछ हरा-भरा घाँस दिखाई दे रहा है और एक हिरण दिखाई दे रही है जो की ब्लैक कलर की ही साथ ही एक झील दिखाई दे रही है जिसमे कुछ पानी भरा हुआ है।

पानी के बिच मे एक पेड़ लगा हुआ है जो की सूखा हुआ है।

कुछ पक्षियों का कलर काला है और कुछ पक्षियों का कलर सफ़ेद है कुछ पक्षियों का कलर पीला भी है।

वाइट कलर की एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है साथ ही कुछ खिड़कियाँ भी दिखाई दे रहे है।